एक डर्बी दिखाई दे रही है उसके पीछे बहुत बड़ा मशीन दिखाई दे रहा है।

ये किसी जगह का दृश्य है जहां पे चार ए_सी नजर आ रहे हैं।

यह एक बिल्डिंग है जिसमें लाल कलर से लिखा गया है ओ_के ।

उसके नीचे में बहुत हरा भरा घास भी दिखाई दे रही है।

इसमें रेडहॉट कुल्फी लिखा हुआ है वाइट कलर से।

और एक औरत बैग टांग के खड़ी है सामने में।

ब्लू कलर का बैलून और वाइट कलर का बैलून से सजाया गया है।

नदी में नाव एक चलते हुए नजर आ रही है उसमें कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

और आसमान का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

यह एक पुस्तक का दुकान है।

प्रगति बुक सेंटर इंग्लिश से भी लिखा गया है और हिंदी से भी।

किसी जगह का दृश्य है जहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।